एक दुकान दिख रही है |

और गुब्ब्बारे पर्दे लगे हुए है दिवाल पर |

और एक टेबल है जिस पर डब्बे रखे हैं बोहत सारे |

तराजू रखा हुआ है |

तस्वीर में हमें एक नदी टाइप की दिख रही है | जिसके आस-पास पेड़ लगे हुए --

यह तस्वीर में एक चर्च दिखाई दे रहा है जिस पर लिखा हुआ है बिलीवर्स ईज द चर्च |

और एक कोई इंसान हाथ में कप लिए है जिसमे कॉफ़ी भरी हुई है | जिस पर लिखा हुआ है नेसकफे |

बगल में एक खिड़की दिखाई दे रही है | एक गेट खुला हुआ दिखाई दे रहा है |

हवाई जहाज़ का गेट खुला हुआ है |

यह तस्वीर किसी गैराज की है जहाँ पर दो आदमी एक कार को लेके खड़े हुए हैं |

सामने फल रखे दिखाई दे रहे हैं |

यह एक टेम्पू स्टैंड है |